मंदिर की चोटी पर एक झंडा लगा हुआ है।

यह एक व्हाइट कलर की बहोत बड़ी इमारत दिख रही है।

क्रीम कलर के पर्दे दिख रहे हैं।

लोहे के शटर दिखाई दे रहे हैं।

घास में बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है।

और हरा रंग हो रखा है पिलरों पे गुलाबी रंग हुआ है।

यहां पर झरना दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोग नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर दो लड़कियां सेल्फी देखी दिखाई दे रही है।

यहां दो शटर दिखाई दे रहे हैं पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

दो कप पर वर्ल्ड टीचर्स डे लिखा हुआ है।

बहोत सारे लैपटॉप रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक व्यक्ति जिम करता हुआ दिखाई दे रहा है।